और बहुत से गमले भी रखे हुए हैं।

यह एक परचून की दुकान है।

और उधर से रेल भी आ रही है।

और एक लोहे का गेट भी है।

यह एक बहुत बड़ा घर है।

और ये एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है।

और एक लोहे का गेट भी लगा हुआ है और दो आदमी फोन चला रहे हैं।

अउर इसमें एक लाइट और पंखा भी है।